यह एक मस्जिद का चित्र दिख रहा है।

वह लड़का सैलून में बाल कटवाने गया है।

वह ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है।

यहां पर कुछ सारे आदमी बैठे हुए हैं।

यहां पर कुछ सारे टेबल --

यह एक फूल का तस्वीर दिख रहा है।

यह टेंपो का कलर पीला है।

यहां पर बहोत सारे आदमी भी है पीछे एक बैंक है।

यह एक मॉल का तस्वीर दिखाया जा रहा है।

यहां पर मैगी है एट्टीटू रुपया का यहां पर पर्क भी है सेवंटीसिक्स रुपया का।

यहां पर फाइव स्टार है एक सौ चौदह रुपया का।

यह मैदान काफी बड़ा लग रहा है।

यह एक मंदिर का चित्र दिख रहा है।

यहां पर आदमी लोग सब बैठे और खड़े भी हैं।